ये देखिये ये ये शादी में घर है बहुत मस्त सजाया हुआ है देखने में कितना मस्त नजारा है।

अबी देखिए लिखे थे। यहाॅं पर बहोत अच्छा अच्छा चीज़ रोपा हुआ है।

ये ये लड़की देखिए कतना अच्छा डान्स करता है और ये भी लड़की फेमस लड़की है और देखिए किस तरह से डान्स कर रही है इसका अगल-बगल देखिए कितनाअच्छा सजा-सजावट है।